छोटी सी दीवार दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है आसमान में बादल छाए हुए है।

मिट्टी का ढेर भी दिखाई दे रहा है।

ढाबे में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

और क्रेट दिखाई दे रहे हैं जमीन दिखाई दे रही है एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

टॉयस इंग्लिश स्कूल लिखा हुआ है।

यह एक शॉप दिखाई दे रही है।

छत पर पंखा दिख रहा है स्कूटर दिख रहा है।

शॉप में बहुत सारा सामान दिख रहा है।

एक दीवार दिख रही है दी और छोटा सा मंदिर भी दिखाई दे रहा है और कांच का बहोत बड़ी खिड़की दिखाई दे रही है।

अंदर तस्वीरें लगी हुई है और यहां पे द चेन्नई सिलेक्स लिखा हुआ है।

बहुत सारी बॉटल्स दिख रही है।

और वहां पे बहुत सारी बॉटल्स दिख रही हैं।

और यहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं आसमान भी दिख रहा है।

यह एक रूम दिखाई दे रहा है रूम में बेड दिखाई दे रहा है बेड पे पिलो दिखाई दे रही हैं।